यहां पर घास जमा हुआ है।

यहां पर हमें ये एक गली दिख रही है जिसमें यहां पर एक कुत्ता बैठा हुआ है।

यहां पर आगे एक टैंट सा भी लगा हुआ है।

इसमें यहां पर बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

यहां पर हमें ये एक दुकान दिख रही है।

इस चित्र में हमें ये एक बहुत बड़ा घर दिख रहा है।

बलब भी लगा हुआ है और यहां पर बिजली के तार भी जा रहे हैं।

जो कि कॉफी दे रहा है और पीछे यहां पर पंखा लगा हुआ है।

चित्र में हमें यहां पर ट्रैक्टर दिख रहा है जिस--

यहां पर इस्टूल भी रखे हुए हैं।

इसमें यह एक नीली बुशेट पैरों खड़ा हुआ है।